ये सामने हमें एक बहोत बड़ा पोल देखने को मिल रहा है वहां पे हमें--

ब्लैक कलर का है उसके ऊपर हमें तार देखने को मिल रहा है साइड में हमें एक बहुत बड़ा घर देखने को मिल रहा है जो कि आसमानी कलर का है।

हमे यहा पर एक होल देखने को मिल रहा है होल के बगल में हमे एक--

यहा पे एक चप्पल ब्लैक कलर का है उपर में हमे लाइट देखने को मिल रहा है निचे में हमे टाइल्स देखने के मिल रहा है जो की वाइट कलर का है।

आदमी देखने को मिल रहा है जिसने माथा में लाल कलर का पगड़ी पहना हुआ है और ब्लैक कलर का टीसर्ट पहना हुआ है वाही पे साइड में हमे--

हमें यहां पर एक देखना तो मिल रहा है ज्योकि लाल कलर का है साइड में हमें--

पीला कलर का पेड़ देखने को मिल रहा है वहीं पे हमें एक हरा कलर का गमला देखने को मिल रहा है।

लाल कलर का लाईलिंग किया गया है।

हमें यहां पर एक कुत्ता देखने को मिल रहा है जो कि काला का कलर का है नीचे में हमें बहुत सारे घास देखने को मिल रहे हैं जो कि हरा कलर का है।

जोकि वाईट कलर का है वहा पे हमे एक बस देखने को मिल रहा है जोकि पिला कलर का है।

साइड में हमे ताड़ का पेड़ देखने को मिल रहा है वहां पे हमे लाइन का तार दे--

हमे यहाँ पर एक बतक देखने को मिल रहा है जो की वाइट कलर का है वहा पर हमे क --

हमें यहां पर एक बरा सा फैक्ट्री गोडाउन देखने को मिल रहा है जोकि ब्लू तलर का है।

बहोत तेज फोर व्हीलर देखने को मिल रहा है जोकि ब्लैक कलर का है वहीं पर एक--

साइड में हमें बहुत सारे चेयर देखने को मिल रहे हैं जो कि ब्लैक कलर के हैं ऊपर में हमें एक फैन देखने को--

बोहोत सारे बल्ब देखने को मिल रहे है जो की--

साइड में हमे एक डस्टबिन देखने को मिल रहा है जो की वाइट कलर का है वही पर हमे जाडू देखने को मिल रहा है जोकि ब्राउन कलर --

मॉल में बोहोत सारे लाइट्स देखने को मिल रहे हैं यहां पे एक पर्स देखने को मिल रहा है जो कि ब्लै ब्लैक कलर का है।

एंड यहां पर देखने को हमें यहां पर--

वाइट वाले गुलाब के फूल देखने को मिल रहे हैं।